फूलों की मालाएं दिख रही है बहोत सारे फूल दिख रहे है सफेद रंग के फूल है येलो रंग के फूल है रेड रंग के--

बोड टंगे हुए हैं जिन में लाइट्स चल रही है।

बहोत सारी चेयर है नई-नई चेयर जिसमें प्लास्टिक रैप है।

अ दोती दो चार बांध खुले हुएजिसमें से पानी का फ्लो बहुत तेज--

ब्रिज बना हुआ है साइड में ब्रिज पे कुछ लोग --

स्टेपलर रखा हुआ है पेन रखा हुआ है पेपर रखा हुआ है व्हाइट पेपर --

और ग्रीन कलर का पौदान रखा हुआ है बाइक दिख रही है स्टूल रखा है।

यहां सामने मुझे एक पूल दिख रहा है ।

ग्रीन टी का बॉक्स रखा हुआ है सॉस की बोतलें रखी हुई हैं बहुत सारे चिप्स टंगे हुए हैं ।

काउंटर बने हुए हैं फ्रिज रखा हुआ है ।

यहां सामने एक बिजली का खंभा दिख रहा है जिसमें बहोत सारे वायर लगे हुए हैं एक बॉक्स लगा हुआ है।

कोरल कलर के और पेपर फॉर्म का बनाया हुआ है और--

और सोफे रखे हुए हैं चेयर रखी हुई है।

एक दुकान दिख रहा है दुकान में--

नीचे घास है सड़क बनी हुई है बीच में --

और बाहर टाइल्स लगा हुआ है गेट में वॉल पे और चित्र बने हुए हैं।

माता जी की प्रतिमा दिख रही है देवी मां की--

डांस कर रही है हाथ में कंगन पहनी हुई है ।

वाइट कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

और वॉल पे म्म वॉल पे स्टीकर लगे हुए हैं ।

यहां सामने मुझे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ।

पीपल्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ नर्सिंग --

और बहुत बड़ा बड़ा साइड साइड में गार्डन बना हुआ है ।